यहां पे एक आदमी है जो यहां पे कैमरा --

मुंबई शहर क्रमांक है दो तीन पांच--

इसी के लिए यह लेके जाते हैं लोग यहां से एक बोरी है।

उखी हुई है आसमान नीला नजर आ रहा है एक आदमी है लड़का है जो पहुंच चुका है।

वहां पे एक दरगाह नजर आ रही जिसका नाम है हजरत बाबा सैयद शाह।